पूजा पाठ करने के लिए और ये काफी खूबसूरत मंदिर है और पूरी के पूरी व्हाइट मंदिर है ये।

ये बहोत टाइम से मार्केट में है और ये ब्रांच काफी बड़ी है और यहाँ पे अच्छी खासी पैसे की लेन देन होती है।

ये एक घर है जहाँ पे झाड़ू लगा रहे है कुछ लोग और ये घर वाइट कलर किया है और यहाँ पे गाडी खड़ी है एक बाइक खड़ी है और ये काफी अच्छी घर दिख रही है।